पनीर पेड़ा मिलता है। यहाँ पर किराना इस जनरल स्टोर है।

एक बगीचा है। बहुत अच्छे पेड़-पौधे हैं हरा-भरा गार्डन है ।

नहीं दिख रहा वहां पर बहुत सुन्दर लग रहा है।